पास में ही एक बड़ा पौधा भी लगा हुआ है।

इसमें देखने से यह गंदा स्थान दिख रहा है।

धूप ज्यादा होने की वजह से लोग छाता लेकर बैठे हैं।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

जमीन पर लाल व नीले रंग की दरी बिछी हुई है।

इस फोटो में एक किताब का स्टोर दिखाया गया है।

इस चित्र में किसी बिल्डिंग का एंट्री गेट दिखाया गया है क्योंकि इसमें सामने के तरफ एक बैरिकेटिंग लगी हुई है।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

इस फोटो में ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिस दिखाया गया है जिसमें सामने की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है।

छत पर सेंट्रलाइज्ड ए_सी व लाइट लगी हुई है।